और कई सारे हरे-हरे पेड़ छोटे-छोटे लगे हुए हैं। जिन में कई सारी पत्तियाँ भी हरी-हरी दिख रही हैं।

जोकि हॉकी प्लेयर मेजर ध्यान चंद जी की है।

अंदर कुछ डाल्टन में लगी हुई हैं।

यह एक मस्जिद की तरह लग रहा है गुम्बद जोकि बोहोत अच्छा डेकोरेट किया गया हैं।

नाई बाल वगैरा भी काटते हैं और एक बहुत अच्छी कुर्सी भी पड़ी हुई है। सामने शीशा लगा हुआ है।

और कई सारे वाइट और रेड कलर के बैलून भी लगे हुए है।

यहाँ एक शॉप लग रही है जो कि दुकान है और यहाँ पर कई सारे कपड़े वगैरा रखे हुए हैं।

छोटे-छोटे टुकड़े रखे हुए हैं फ्लावर की तरह और --

यह एक मंदिर के अंदर का दृश्य है जहां पे बहुत ही अच्छा --

और कुछ लोग इसको सेल कर रहे हैं और वहाँ पीछे इसके एक लोग लेडिज बैठी हैं कुछ टायर रखे हुए हैं।

ये एक यूनियन बैंक के बाहर का फोटो है जहां पर यूनियन बैंक का --

यह की दुकान है जूस एंड स्नेक्स का बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर कुछ पेपर पे पेपर से कुछ अच्छी-अच्छी आकृतियाँ बनी हुई हैं। कई सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं बत्तख की --

दरवाजा वो भी लोहे का है जोकि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी बन रहा है।

जिसमें कि येलो कलर की और कई सारी कलर की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

व्हाइट कलर की कुर्सियाँ है कई सारे फैन लगे हुए हैं।

यह किसी होटल या कैफे का फोटो लग रहा है जहां पे कई सारे केक्स वगैरा रखे हुएं --

और कोई लोग रोड पे चल भी रहे हैं।

बड़े-बड़े छोटे-छोटे पत्थर भी हैं और कुछ पुराना अ बिल्डिंग भी बना हुआ है।